जो हरे कलर का है और इसमें कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई दिख रही है।

ऐ फोटो किसी मैरेज हॉल का फोटो दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है।

और मैदान में दो कुर्सियां भी डली हुई दिखाई दे रही हैं।